यहां में एक प्राइज डिसटीब्यूशन होने कर रहे है।

अ बॉक्स बॉक्स टाइप में रखा हुआ है और ऊपर में एक ठो मेजरमेंट भी दिखाई दे रहा है।

यहाँ में ये पिक्चर में बहुत सारा पेड़ लोग दिखाई दे रहा है।

दोनों के आगे में एक ठो नोटिस आ एक ठो बैनर लगाके है।

उम ये एक रिसेप्शन वाला हॉल लग रहा है।

या में एक ठो रूम नजर आ रहा है।

उसका ऊपर में एसी भी दिखाई दे रहे हैं।

और उसके ऊपर मे लाइट भी जलते हुए दिखाई दे रहा है।

और उसका आगे में एक तू ये रिजॉर्ट भी दिखाया गया है।

और आगे में बहुत सारा फ्लावर प्लांट भीं दिखाई दे रहे हैं।

यहां में बहोत सारा फोटोस चिपका के वॉल दिखाई दे रहा है।